इस मंदिर में लिखा हुआ है भगवान नरसिंह भगतराज प्रह्लाद की रक्षा हेतु दैत्य हिरण्याकश्यप के वध --

मॉल के बगल में कुछ घर भी दिखाई दे रहा है। मॉल के बाहर सीढियाँ बनी हुई हैं। सीढी के बगल में एक या क लोगों के बैठने के लिए कुर्सी टाइप की लगायी गयी है।

ये भान हैं यहा भने बहुत पंडाल लगाए गए हैं | यहाँ बाहर कुछ लोग भी खड़े हैं | इसमें --

यहां यह इसके अंदर में मोटरसाइकिल वगैरह जा रही है इसमें कुछ लोग आ रहे है कुछ लोग जा रहे है इसमे कुछ लोग खड़े भी हैं |

इसमें बैठने के लिए भी सोफा वगैरह है। ये बोहोत ही साफ़ और चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है।